इसमें आरती बुक सेंटर है जिसमे किताब विताब बिक सकते हैं| बोहोत बढ़िया लग रहा हैं देखने मैं | उसजला पेंट से दुकान है गुदीन लगयेला लग रहा हैं। इसमें बोहोत भीड़ पद रही हैं।

इसमें एक लड़की और जेंट्स और औरत भी हैं जो साल वूल लेकर के खड़े हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। इसमें मकान बहुत बढ़िया लग रहा हैं देखने मैं| उसके ऊपर एक पेड़ हैं जो बहुत अच्छ--

--और इसे एक्स से पुकार जाता हैं और यह बहुत बढ़िया देखने मे लगा हैं जो उधर पेंट से भी किया गया हैं।

और यहाँ बहोत बढिया मकान भी हैं जो उजाला हैं और परदा भी लगा हुआ हैं| देखिए तार भी हैं| तार से हम लाइट भी जोड़ सकते हैं| और माइक भी हैं माइक से हम बोल सकते हैं| एक बहोत बढिया।

इसमे कलम कॉपी भी बिक सकता हैं जो पढ़ने के लिए हैं और यह बहुत बढ़िया देखने मे लग--

कोई चादवहील लग रहा हैं| और उसमे लाइट भी हैं| लाइट का भी रो सिस्टम दिया गया हैं जो बढ़िया लग रहा हैं देखने मैं।

यहाँ रोड हैं। सड़क भी हैं जो आदमी अंदर से आ रहे हैं| उसमे बहोत सारा दुकान भी हैं| देखिये और इस यहाँ देखिये यस चार जगह मोटरसाइकिल भी लगा हुआ हैं तीन चार मैं देख--